पीछे घर भी नजर आ रही है सजा हुआ है पूरा अच्छा तरह से अ ब्लु चमचमिया रंग से लगा हुआ।